दुकान के पीछे एक घने जंगल है।

यहां बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया हुआ है।

यहां बहुत बड़ा पार्क दिखाई दे रहा--

यहां कोई कोई लोग झूला झूली भी कर रहा है।

व स्कूल के सामने एक ग्राउंड भी है।

यहां मग तरह तरह का पाया जाता है।

यहां एक बड़ा सा स्कूल दिखाई दे रहा है।

स्कूल के पीछे बहुत सारा घने जंगल है।

यहां में एक आइलैंड है।

यहां एक पुल जैसा देख रहा है।

दुकान के सामने पेड़ और कोल का गाछ भी दिखाई दे रहा है।